एक अच्छा प्रोडक्ट है ये चौबीस कैरेट गोल्ड से बना है।

होता है यहा मोबाइल फोन मिलते हैं मोबाइल रिचार्ज --

यह एक चर्च है यहां कुर्सियां लगी हुई है।

यहां एक मंदिर दिखाया गया--

डस्टबिन और हेलमेट भी रखा हुआ है।